अच्छी अलमारी लगी है. जो की इसके अंदर बहुत सारे खिलौने भी है और कपडे भी रखे हुए इस अलमारी का सुन्दर अच्छा लग रहा है ।

और तीन चार बॉल भी रखी हुई जो कि बहुत अच्छे कलर का दिख रहा है।

यह एक बहुत बड़ा एल.जी शोरूम है जो इस शोरूम में बहुत बड़े बड़े अल.इ.डी रखे हुए है।

बहुत ही बड़ा तालाब है और इस तालाब के सामने बहुत सारे बैल्डिंगस भी है इस तालाब के जस्ट सामने मे एक पेड़ है जो की बहुत ही सुन्दर दिख रहा है और इस तालाब की खूबसूरती को बढ़ा दे रहा है और यहाँ का लुक बहुत ही सुन्दर है ।

बहुत ही अच्छा लुक --

जो की इनको बहोत ही पैसे होंगे और यह अपने परिवार को खुशी दे सकें।